तस्वीर में एक बड़ा सा होटल दिखाई दे रहा है जिसको प्रॉपर लाइटिंग से सजाया गया है यहाँ तरह-तरह की लाइटिंग कलरफुल दिखाई दे रही हैं यहाँ पर बहोत सारी खिड़कियाँ और कई सारे अंदर जाने के लिए दरवाजे हैं।

एमे पम्पलेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्पेशल ऑफर तीज के मौके पर चल रहा है यह दिनांक --

तेईस आठ दो हजार बाइस से शुरू है यह यहाँ ब्यूटी बॉक्स की तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी।

एंड यहाँ पे कई पेड़-पौधे बादल हैं जो बहुत सूंदर दिखाई दे रहे हैं | काले कलर का हैं |